गिलास भी है देखने में कितना सुंदर लगती है चम्मच भी है प्लेट भी है।

अ अ संतोला कलर का कुछ दिखाई पड़ता है।

और गाड़ी भी दिखाई पड़ता है घर सब भी --

भी बोहोत सारा आदमी योगा करता है बैठ कर हैं देखने में कितने सुंदर लगते हैं रंग-बिरंग का --

और बेग भी है पंखा भी है तीन आदमी भी है दो आदमी सामान खरीदने आया है एक आदमी

और पो पोस्टर भी ल लगा हुआ है और कुर्सी भी दिखाई पड़ता है।

ये एक तालाब है जो दिखने में बहुत अच्छी लगती है।